पुरानी हवेली दिख रही है हवेली के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है.

एक बड़ा रूम है रूम में बड़ा झूला रखा हुआ है.

ख़ैची है टेप है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में दो टैंपो काले कलर के है.

दो औरता है दो ओरतो में एक औरत की साड़ी लाल है एक औरत की साड़ी पिक है.

पूरे लाल कलर के चित्र पर खिलौने बने हुए हैं.

काले कलर का उम्म बना हुआ है पीले कलर का चित्र है लाल कलर का चित्र हे सफ़ेद --

शोकेस रखा हुआ है शोकेस में ऐनके बहुत है।

अ बहोत से बच्चे शतरंज खेल रहे हे काले कलर के शतरंज के पैदे हे.

तस्वीर में गुरुद्वारा है गुरुद्वारे को फूलों से सजाए हुए हैं और--

बारिश हो रही है छ्त्री पकड़े हुए हैं एक गाड़ी जा रही है गाड़ी में एक आदमी है दो बच्चे पीछे खड़े हुए हैं.

स्टेज को सजा कर रखे है फ-फुग्गो से सजाये हुए है.

काम करने वाले मजदूर की टोपी पीली है और शर्ट लाल है।

तस्वीर में होटल है होटल के सामने आदमिया खड़े हुए है.

बोर्ड ब्लू कलर के बोर्ड के ऊपर हर किसम के इज़ इज़ एडवर्टाइज करने के फोटुस लगे हुए हैं.

स्टेज के ऊपर थोड़े लोग बात कर रहे हैं.

और थोड़े ही लोग को खड़े होकर है.

और दीवारे चोकलेटी कलर की हे.

हरे मिर्ची है भेंडी है प्याज है और चोखंदर दिख रहा है और तराज़ू है.

इस चित्र में वाशिंग मशीन की दूकान है फ्रिज है टेबल खुरसिया है और सोफा है.

और टेबुल के ऊपर दो गिलास रखें हुए हैं।

दूसरे मर्द वें हैं और एक पुंगी बजा रहा है एक बाजा बजा रहा है।

और बहोत सी मछलियां साइड में रखे हुए हैं।

पानी बहुत ही बह रहा है।